एचडीएफसी बैंक दिन का समय है और लाईट की व्यवस्था के साथ यहा पे ऐ.टी.एम के बाहर पैसा निकलने वाले लोग--